इस फोटो में मुझे बाल काटने का सामान दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे एक कपड़ों की दुकान दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे एक खेत की मेड़ दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे कुछ एस्केलेटर दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो मे मुझे दो दरवाजे दिखाई दे रहे है।

इस फोटो में मुझे एक मेन्यू कार्ड दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे एक प्लास्टिक की दुकान दिखाई दे रही है।